इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है झाड़ दिख रहा है। एक मैदान दिख रहा है जहां पर बहुत से लोग नजर आ रहे हैं महिला और पुरुष बहुत ज्यादा हैं और तीन पुरुष सफेद रंग की शर्ट पहने नजर आ रहें --

इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है। बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं। एक पार्क दिख रहा है जिसमें घांस उगी है और कुछ सूखे पत्ते नीचे की तरफ पड़े हैं और कुछ झूले लगे हैं जिसपर बच्चे सवार हैं।

झील दिख रही है झील पर ये मशीन खड़ी नजर आ रही है जिस में बहोत सी तारे हैं।

एक ऑटो रिक्शा पेट्रोल भरवा रही है और एक मोटरसाईकिल भी पेट्रोल भरवा रही है और एक मोटरसाईकिल चलती हुई नजर आ रही है।

तस्वीर में कुछ महिलाएं दाएं तरफ दिख रही हैं बाएं तरफ कुछ पुरुष दिख रहे हैं।

एक मैदान दिख रहा है जहां पर बोहोत सी मेजें पड़ी हैं जिस पर कोई नहीं बैठा।

एक मैदान दिख रहा है। जहां बीच में एक चक्की दिख रही है।

और दाएं बाएं तरफ शेर की मूर्ति दिख रही है।

और एक छोटी सी दुकान दिख रही है जिसमे कुछ सामान पड़ा है उसके सामने कुछ थैले भी पड़े हुए दिख रहे हैं पीले सफ़ेद रंग के।

तस्वीर में नीला आसमान दिख रहा है। एक बड़ी सी झील दिख रही है।

कुछ हरियाली दिख रही है और कुछ बड़े-बड़े फत्थर भी दिख रहे है ।

इस तस्वीर में नीला आसमान दिख रहा है | एक इमारत दिख रही है बनती हुई ।

इस तस्वीर में एक कपड़ो की दुकान है जिसमे कई सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं|